यहाँ पर अनार छठा रही है और पटाखे छठा रहे है फुलझरिआ की ओपन एरिया में खड़े होके छठा रहे है और आपको यहाँ पे कुछ--

व्हीकल खड़े हुए दिख रहे होंगे एक आदमी है जो फ़ोन से इनके फोटो निकाल रहा है और रात का समय है अनार बहोत ही खूबसूरत लगे रहे है।

ये फोटो एक रेस्टोरेंट का है और ये रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर है और आप देख सकते है कितनी प्यारी डेकोरेशन कर रखी है।

और पथरो को काट - काट कर जो पीछे जो हैं दीवारे बहुत ही मजबूत बनती थी।

यह तस्वीर एक मैरिज प्लेस की है आप सामने की तरफ स्टेज देख सकते है स्टेज के ऊपर एक बड़ा सोफा लगाया गया है जो की दूल्है और दुल्हन के लिए है।

कुछ लोग है जो यहाँ घूमने आए है झरने का आनंद उठा रहे है मजे ले रहे है झरने में पानी में और कुछ लोग यहाँ नहा भी रहे है।

और ये पूरा घर को लाइट सजा के बहोत ही जो है शानदार ये घर लग रहा है सामने की तरफ बहोत सारी पब्लिक दिख रही है जो की बारात है और एक बाराती की जो है कार आयी हुई है।--

दो संतरे केले और से सेव और अनार रखे हुए है पीछे की तरफ ऐसी एक सब्जियों की लगी हुई है।

तस्वीर एक डांस क्लास की है यहाँ आप क्लासरूम देख सकते है यहाँ पे सभी छोटे- छोटे बच्चे है जिन्होंने एक ब्लू कलर की सभी ने कॉमन टी -शर्ट पेहनी हुई हैं।

आप देख सकते है एक बोर्ड लगा हुआ है। जो मैन गेट है इसका एंट्रेंस --

और अच्छे रस्ते दिख रहे है और इधर साइड में एक घर बना हुआ है।

और जिसका भी काम चल रहा है जिसे लिपाई नहीं ईंटो से ही घर बनाया गया है| इधर साइड में आपको एक मिट्टी का कूड़ा नजर आ रहा होगा और बहुत ही सुनशान हे।